और ये देखने में भी बहोत ही सुंदर लग रहे हैं और ये काफी अच्छे भी हैं ये गुलाब।

और ये पंखुड़ियाँ कूलर की भी हैं और ये एक देखने में भी काफी सुन्दर लग रहीं हैं | ये --